यहाँ पर हमें चार पाँच दुकाने दिखाई दे रही है एक दुकान पर हमें--

एक पेड दिखाई दे रहा है बोहोत सारे मोटोरसायकल सायकल खडी दिखाई दे रही है बोहोत सारे खंबे लगे दिखाई दे रहे है हमें रेलिंग दिखाई दे रहि है ये हमें शाम का समय दिख रहा है।

एक जीप खडी हुई दिखाई दे रही है व्हाईट कलर की है और यहा पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहे है और देखने मे अच्छा लग रहा है मे व्हाईट कलर पेंट किया गया है और महरून--

और घास वो भी दिख रही है कई कई और वही पेड़े भी दिखाई दे रहे कई कई आसमान दिख रहा --

यहा पर हमे एक पंखा रखा हुवा दिखाई देराह है एक हमे मशीन दिख रही है टोल नेकी।

यहा पर हमें पानी दिखाई दे राहा है और हमें कुछ कचरा सा भी दिखाई दे राहा है|